यहाँ पर आपको लकड़ी से बनी हुई शिल्प उपहार वस्तुएँ मिलेंगी।

इतना ही नहीं आपको दीवाल पे सजाने वाली वस्तुएँ भी यहाँ मिलेंगी।

कुछ बिल्डिंग ऑरेंज कलर के हैं और सामने गेट है ऊपर दो फ्लोर्स हैं।